मुझे एक स्टेज दिख रहा है स्टेज पे एक कुर्सी रखी हुई है सामने वीडियो शूटिंग के लिए मशीन रखी हुई है गद्दे बिछे हुए हैं ऊपर फ्लावर्स दिख रहें हैं फ्लावर्स से डेकोरेशन दिख --

मुझे एक भवन दिख रहा है जिस पे प्रशासनिक भवन लिखा हुआ है उसमें बहुत सारी खिड़कियाँ दिख रही है जे.वी.सी. खड़ी हुई है।

मुझे एक कपड़े की शॉप दिख रही है जिसमें लड़कियों के टी-शर्ट दिख रहे हैं टंगे हुए दोनों साइड एक साइड जींस के दिख रहे हैं कोने पे विराट कोहली है।

मुझे एक रेस्टोरेंट दिख रहा है जिसमें व्हाइट कलर की चेय लगी हुई है सामने टेबल रखे हुए है थोड़ी-थोड़ी दुरी पे आदमी भी बैठे हुए है ऊपर पंखे लगे हुए है ये टीन शेड का पूरा कवर है।

मुझे एक बकरी दिख रही है जो की आगे पैर करके बैठी हुई है।

--और एक मास्क लगाए हुए हैं जो कि कुत्ते का इलाज कर रहे हैं उसको इंजेक्शन लगाते हुए दिख रहे हैं कुत्ते की पूँछ पर ब्लू कलर का निशान बना --